दाल सभी चीज अवेलेबल है यहां सब कुछ मिल रहा है बहुत ही अच्छा दुकान है.

एक घर है जो बहोत ही अच्छा है उसको रंग-बिरंगे लाइट से सजाया गया है.

और पीछे तरफ पर हरा भरा है.

इसमें आदमी को बैठने के लिए वहां बेंच बना हुआ है साइड में.

दिख रही है कुछ बीच में पौधे भी लगे हुए हैं.

यह बनके रेडी है बहुत ही अच्छा अच्छा केक है.

यह ऐ_सी का कुछ सामान खुला हुआ है जिसमें वो इधर सामने रखा हुआ है पीछे इसका प्लेट रखा हुआ है इधर प्लास भी रखा हुआ है.

पेट्रोल पंप भी दिख रहा है इधर चूना से पेड़ का जड़ पोत किया गया है यह झंडा है जिसमें लाइनिंग लाइनिंग रेड कलर का जिसको बोला जाता है.

यो यसम गैरेज हे.

लाइट भी बहुत अच्छा लग रहा है येलो कलर का काफ़ी सुन्दर लुक है.

और ये जो है पानी का फुहारा गिर रहा है.

रंग बी रंग साड़ी है लाल है ब्लू है.

लेफ्ट में भी लोग हैं राइट में भी है कुछ ये लग रहा है जैसे की कुछ वजन करने का ऊपर मशीन है.

जिसमे कुछ टंगा हुआ हे वाइट कलर का बॉडी टंगा हुआ हे बोरी और लोग जो हे बोरी--

यहा पे सब बच्चे लोग डांस कर रहे हैं जिसमें कुछ लड़कियां भी है कुछ लड़का भी है.

रखा हुआ हे और कोई लोग जो हे एक लेने के लिए अभी बुलु टीशर्ट मे खरे हे.

किसी चीज का ये ऑफिस है.

ये ढाबा है ढाबा के अंदर पूरा चेयर वेयर लगा हुआ है कुछ --

फ्लोर में कुछ कुछ लोग खड़े हैं काफी अच्छा दृश्ट है.

दाहिने साइड भी पैड पौधा पूरा लगा हुआ है और बिल्डिंग जो है पीछे तरफ़ भी है और लेफ्ट साइड में भी बहुत सारा रूम टाइप का बना हुआ है.

ये भी रात का सीन है पार्क टाइप का कोई जगह है जिसमें लोग घूम रहे हैं पीछे बन जंपिंग बेग लगा हुआ है उस पे बच्चे लोग खेलते हैं और काफी अच्छा लाइटिंग है.

बीच में कुछ झूला ऊला वगैरा भी है और लोग झूले के तरफ--

यहां पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है अनेको प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं.

इसमें को उधर से कुछ झाड़ू वगैरह कर रहे हैं ब्लू कलर का टी-शर्ट पहन के व्हाइट कलर का ये करके उधर अंदर तरफ से दिख रहे हैं.

सामने से टीचर खड़े हैं यह स्कूल का सीन है दीवाने पर पिंक कलर का यह पेंट किया हुआ है छह पांच छह लड़की हैं जो कुछ-कुछ कार्य कर रही है और सामने टीचर जो है उन्हें देख रहे हैं.